ये मन मूर्ति भी अच्छा दिख रहा है भाईसा मूर्ति भी अच्छा दिख रहा है भगवन है और ये सा नांग सांप जैसा दिख रहा हैं पत्थर भी अच्छा दिख रहा हैं।

और यहाँ पर अच्छा दिख रहा है और लाइट अच्छा जल ओ भी अच्छा दिख रहा है रोड में मैं घूमना चाहता हुं जहाँ में एक नंबर है जहाँ मैं जाना चाहता हुं जहाँ में एक नंबर जगह है जहाँ पर जगह पर हम सो सकते है।